कुछ लोग यहां पर वर्कआउट कर रहे हैं कुछ लोग एक दूसरे को देख रहे हैं।

जो पीले कलर के वाइट कलर के मिक्स कलर के सब कलर के यहां पे पड़े हुए हैं इसमें वाइट और येलो कलर के कागज़

एक घर भी है और इधर उधर बहोत सारी झाड़ियां भी है --

लिखवाई जा रही है और यहां सिस्टर इंजेक्शन --

ये अच्छा लग रहा है और इसके पीछे बहोत ही ख़ूबसूरत व्यू नज़र आ--

जिक्र हो रहा है इज़हार कर सकते हैं आप भी घूमने जा--

पे कोई भी नहीं देख रहा है आदमी कोई भी नहीं दिख--

पर जिक्र करवाया गया है कि यहां पर ऐसा है यहां पर टाइल वगैरह लगी हुई है लाइट्स वगैरह लगी हुई है टू टाइप्स की टाइल लगी हुई है और --

दो आदमी गुजर रहे है गुफा के अंदर गुजर रहे है बहुत ही बड़ी

पर खड़े हुए हैं औरशन दालू भी यहां पर दर्शन करने आए हुए हैं जो यहां पर फोटो खींचने के लिए खड़े हुए हैं।

वहां पर खाना परोसा गया है और कुछ--

पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिख रही है जहां पर एक आदमी--